ये एक जनरल स्टोर की शॉप है यहां पर--

ये एक डिजाइन वाला केक है।

यहां पर बहोत सारे स्पीकर लगे हुए है जिनका रंग काला है।

और जो घर है वह सफेद रंग का है और जो दीवारों का रंग है वह उस पर हरे रंग की पट्टियां--

कप है पीछे लाइटें भी लगी हुई है छत पर एक फ्रिज भी रखा हुआ है।

ये एक रास्ते का वीडियो है एक तरफ स दुकाने हैं और एक तरफ कुछ पहाड़ है।

दो व्यक्ती यहां पर खड़े हुए हैं एक व्यक्ति ने ऑरेंज कलर की टी शर्ट और पैंट पेहन रखी है।

होटल‌ के पास एक और बिल्डिंग बनी हुई है।

तक दो तकिए रखे हैं तीन छोटे-छोटे तक्के रखे हैं पास में ही एक सोफा रखा हुआ है और एक गोल टेबल .

ये वीडियो एक शादी समारोह का है यहां पर।

और चद्दर है नीले पीले हरे रंग की --

सामने की तरफ घर बना हुआ है डिजाइन मे नीचे की तरफ--